गेट बहुत अच्छे से सजाया है जिसमे हरे कलर के लाल कलर के सफ़ेद कलर के फुगो से बाउंड्री बनाई गई है।

--और यह कीबोर्ड ही बहुत ही अच्छी है।